आआ तेल के लिए अच्छा लग रहा है सब लोग अपना-अपना तेल भरवा रहे है लोग और जा रहे है लोग ।

ये बैंक है वो जो बैंक में सभी लोग इसमें जिसका काम है वो सब गया है लोग।